और महल का यहाँ पर एक बोर्ड बना है क्यूंकि वोई पथरीले सीमेंटेड से बना हुआ है ये बोर्ड और इसपे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है महल के बारे में और महल के उम्म आ बोर्ड के साइड में कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर अ गेट लगे हुए है और जो की बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है बड़ा और रोड है और रोड के सा गेट लगा हुआ है।

एक रोड के बीच में बैरिगेट्स लगा हुआ है जो की अभी बंद है बैरिगेट्स बंद है कुछ और--

नाईट के टाइम में गोल्डन कलर की दिख रही है पूरी होटल है जो की अअ गोल्डन कलर की दिख रही है और पार्किंग में कुछ गाडियां खड़ी हुई है।

एक झंडा लगा हुआ है नेशनल फ्लैग लगा हुआ है ऊपर और अभी नाईट की टाइम लाइट जल रही है कुछ बाइक वगैरह खड़ी हुई है एक ग्राउन्ड है सामने।

और यहाँ पर कुछ कार्यालय का आ-उम्म आस पास मे कुछ बहुत सारे पेड़ पोधे लगे हुये है और कार्यालय के बाहर एक गेट लगा हुआ है।